इस इमेज मे हमे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक टेम्पो खड़ा हुआ दिख रहा है चार-पाँच हमे बाईक दिख रही है।

इस इमेज में हमे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो वाइट और ब्लू कलर से पेंट किया गया है उसका।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

इस इमेज में हमें एक चैनल गेट दिखाई दे रहा है जो खुला हुआ है और एक दूसरा चैनल गेट है जो बंद हैं

इस इमेज मे हमे सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है पूर्णिया और प्रधान डाक घर हेड पोस्ट ऑफिस --

इस इमेज में हमें एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे लिखा हुआ है प्रधान कार्यालय| हमें एक गेट दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का दिख रहा है|